जो भी खिलाड़ी इस प्रक्रिया को करते हैं वो अपने खेल को और मजबूत बना सकते हैं|

और बहुत सारे बैग्स लगे हुए हैं। बैग्स की दुकान है जो कि आप यहाँ पे आके आसानी से खरीद सकते हैं।

ये एक बगीचा है जहाँ पर बहोत सारे हरे भरे पेड़ लगे हैं रंग बिरंगे फूल खिले हैं। यहाँ पर एक औरत खड़ी होकर पौधों को पानी दे रही है। पौधों को पानी देना बहोत ही पुण्य का काम होता है और ऑक्सीजन के तौर पर पौधे हमारे लिए बहोत ही महत्वपूर्ण है।